यमणी हम तें भोत सारी घास छ दिखेण लगी उंडे हम तें एक कुड़ा की दिवाली छ दिखेण लगी जफणा हम तें कुछ फुल की डाली अर कुछ वनि डाला दिखेण छ लग्यां दिवाली पर हम तें एक खिड़की भी दिखेण छ लगी अर पार फणा कुछ डाला भी दिखेण लग्यां।

ये चित्र मां हमतैं एक बड़ी जगह च दिखेण लगीं यु दिखेण से एक होटल लगण लग्यूं एंच वाला छत पर भोत सारी लाइटिंग लगीं।